हर एक प्रकार के कलर में आपको मिल जाएगा जैसे ऑरेंज ब्लू ब्लैक हर एक तरह का सोफ़ा मिल जाएगा गद्दे का गद्देदार --

सब ची प्रकार का भुजा मिल जाएगा। हर एक तरह की मिठाइयाँ भी आपको मिल जाएंगी।

वीर गया का गाँधी मैदान का ग्राउंड है।

सफेद सब अब तरह का आपको शर्ट यहाँ पे मिल जाएगा।

ये कबर्ड है। इसके अंदर कपड़ा सामान कुछ भी रख सकते हैं। ये कब्बड़ --